और बहुत सारे रंग-बिरंग कुर्सियां बिठाई गई हैं बहुत सारे सोफे बिछाए गए हैं।

एक बहुत बड़ा मंदिर है आसमान का रंग नीला आ रहा है।

हाइवे रोड है हाइवे रोड के सामने दस पंद्रह व्यक्ति खड़े हुए हैं।

एक साइड लेडीज का पुतला बना है लेडीज ने सलवार सूट पहना है।

एक बहुत सुंदर मंच बनाया गया है। मंच मे बहुत सुंदर सुंदर लाइट लगाए गए हैं।

दो व्यक्ति डांस कर रहे है जांघ पे खड़े हुए है।

वॉल का कलर भूरा कलर का है ऊपर सीलिंग सफेद कलर का है।

और घर के सामने बिछाया गया है।

तीनों बाई का कलर ब्लैक है।

बहुत सुन्दर सा घर बनाया गए हैं।

शोरूम का कलर सफेद है।

और दो टेबल बनाये गए हैं।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है उसने मास्क पहना है।

एक ने पैंट शर्ट पहना है और दूसरे ने पैंट और गमछा पहना है।

नजर आ रहा है तीन चार व्यक्ति खड़े हुए हैं।

अगल बगल छोटे मोटे घर भी बनाए गए हैं।

एक बहुत सुंदर रूम बनाया गया है।

और उसके बगल में एक बहुत बड़ा डब्बा भी रखा गया है।

एक दरवाजा है दरवाजे में लगा हुआ है।

अह बाहर बैलून से सजावट किया गया है गेट को।

गेट के सामने एक पुतला बनाया गया है।

खिड़की और दरवाजे शिशे के लगाएं गए हैं।

दो दरवाजे रेड कलर का है।

उसके बगल में बहुत सुंदर सुंदर सी क्रीमें हैं।